पूरा पत्थर से बनल बादल दिखाई देत ह असमानी लाल सफ़ेद हरा-हरा घास ह पेड़ ह पौधा ह अगल-बगल पिला रंग क मकान छोटा सा मकान ह।

और बादल लउकत आ नीला हरा सफ़ेद हरा - हरा पौधा ह पेंड़ ह।

एक ख कुत्ता खड़ा ह लाल रंग क ेल मेहरारू कुल पैसा डाल थ निकाल थ पइसा सेफ रही बैंक में बैंक में और कहाँ सेफ रही अब तोह कोई न कोई निकाल --